जैसे की अपने को नज़र आ रहा है की व्हाइट कलर की कारे बनी हुई है। कार काफी बड़े बड़े बनी हुई है इसके ठीक पीछे की साइड मे नीला कलर का चद्दर लगा है चद्दर के ठीक आगे की साइड मे बडीसी दो मल्टी है।

एक नीला है एक रेड एक काला एक पीला है। इसके ठीक पास मे एक बॉक्स लगा हुआ है बॉक्स काफी बड़ा और काफी अच्छा नज़र आ रहा है इसके ठीक पिछे के साइड मे एक बॉक्स है जोकी काफी ब--

उसके ठीक पीछे एक बाईक खड़ी हुई बाईको के ठीक पीछे एक आदमी है जो कि चाचा नज़र आ रहा है उसके ठीक पीछे नीले कलर की टॉर लगी हुई है।

इनके मूर्ति के अंदर दो मूर्ती दो बड़े बड़े हार लगे हुए है। हारों ठीक पिछे के साईड मे एक लकडी का सॉकेट बना हुआ है सॉकेट के ठीक पिछे की साईड मे वो एक महिला बैठी हुई है वो महिला के ठीक पिछे बटन रखे हुए है बटन के ठीक पास मे एक मंदिर है। मंदिर के--

जैसे की अपने को नज़र आ रहा है बड़ासा ये शोरूम है। शोरूम के पास मे कपडे धोने की मशिने ल लगी हुई है ये मशिने बहुत बड़ी बड़ी रखी हुई उसके ठीक पास मे एक और व्हाइट कलर का और ब्लॅक कलर का टेबल रखा टेबल के ठीक उपर के साईड मे बड़े बड़े कपड़े रखे हुए है।

जैसे जैसे की अपने को नज़र आ रहा है की ये एक लोहे की रॉड लगी हुई है रॉडो के ठीक पिच्छे की साईड मे बड़े-बड़े खंबे खंबे के ठीक पिच्छे के साईड मे एक बड़ीसी घास है।

ऑरेंज है कोई पीला है। और उसके ठिक पिच्छे के साईड मे एक बेसिन बना हुआ है। बेसिन के ठीक पास मे एक काच लगा काच काफी बड़ा नज़र आ रहा--

ये अपने को नज़र आ रहा है। ये फोटो सुभेह कि खिच्ची हुई नज़र आ रही है। इसके ठिक पास मे एक रेड कलर की व्हाइट कलर की ब्लॅक कलर की कार खड़ी हुई कार काफी अधभूत और काफी बड़ी नज़र आ रही इसकी ठिक पिच्चे के साईड मे छोटासा गार्डन बना हुआ है।

दीवार के ठीक पिच्छे के साईड मे एक लोहेका ब्लॅक कलर का गेट बना हुआ है। गेट के ठीक पिच्छे के साईड मे एक झाहाड है। झाड काफी बड़े और काफी फैले हुए नज़र आ रहे उसके ठीक पिच्छे के साईड मे कही सारा सामान--

की नज़र आ रहा की एक बड़ीसी दीवार बनी हुई दीवारो पे कही बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई तस्वीर के ठीक उपर एक छोटासा काच बना हुआ काचो के ठीक पिच्छे एक दीवार बनी हुई दीवार के ठीक पास मे एक गेट बना हुआ--

जे की अपने को दिख रहा है की एक रोड बना रोड के ठीक पास मे नॉवेल की चैनल गेट से बनी हुई बडीसी मल्टी बनी हुई है मल्टी के ठीक पास मे एक बॉक्स लगा बॉक्स के ठीक पास मे एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ठीक पास मे एक व्हाइट कलर का बोर्ड हैं।

एसे की अपने को नज़र आ रहा है ये एक ब्रिज से खिचा हुआ गया फोटो है ब्रिज के लोहे का ब्रिज बना हुआ है इसके ठीक नीचे के साईडमे बड़ासा समुद्र है समुद्र काफी बड़ा और काफी फैला नज़र आ रहा--

समुद्र के साइड के पिछ के साईड मे देखा गया तो बड़े बड़े घर बने हुए है घरो के ठीक जंगल है जंगल काफी बड़ा और काफी फैला हुआ नज़र आ रहा जंगल के ठिक--